ये डांस एकेडमी है जिसमें बहुत सारे बच्चे एक डांस स्टेप करते हुए दिखाई जा रहे हैं ऊपर पेस्ट क्रीटेड डांस एकेडमी लिखा हुआ है यहां पर काफी सारी लड़कियां हैं जोकि डांस कर रही हैं।